डमरू है जो चॉकलेटी कलर का है दीए है जो चॉकलेटी कलर के पीले फूल है नारियल चॉकलेटी कलर का है।

फल है ग्रीन कलर का ऑरेंज कलर का एक आदमी ने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनना है एक आदमी नहीं ग्रे कलर का कपड़ा है एक आदमी में पर्पल कलर का कप शर्ट पहना है।